एक ब्यक्ति स्पीच दे रहा है कई सारे लोग जमीन पर बैठे हुए हैं।

सारे पोस्टर लगे हैं जिसपर डेजर्ट की फोटो छपी हुई है।